खरीद रहा है और एक बच्चा भी दुकान पर खड़ा है।

और बहुत सारी पाईप रखी हुई है।

रिफाइंड पांच लीटर वाली जिख रही है और--

और एक अलग कलर का एम्प्लीफायर लिखा हुआ डिब्बा एक और दिख रहा है।

सामने में एक समान से पानी फेंक रहा है।

एक्सरसाइज कर रहा है और--

सामने में एक फास्ट फूड की दुकान लगी हुई है जिसमें बहुत प्रकार की--

एक और हाथ जो ऊपर किया हुआ है और बगल में एक आदमी--

और टाइल्स लगा हुआ है सीढ़ी पे जोकि ब्लैक कलर का है और--

और दो आदमी दुकान के बगल में बैठा हुआ है।

सामने में एक दुकान दिख रही है जिसमें कुरकुरे का पैकेट रखा हुआ है।

बगल में लेज का पैकेट टंगा हुआ है।

पीछे में व्हाइट दिवाल है और सब--

और दीवाल पे एक कमल का फूल बना हुआ है और दीवाल के पीछे वाले दीवाल पर एक फैन --

और पिक्चर में भारत का झंडा पर फिगर बनाकर टांगा हुआ--

सामने में एक दुकान है दुकान पे--

पीछे एक औरत बैठकर सब्जी बेच रही है।